इस फोटो में दुकान दिखाई दे रही --

राइट साइड में एक एयरटेल अनलिमिटेड थ्री फोर नाइन लोकल आ एयरटेल कॉल्स का एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो में सामने में एक एंट्रेंस गेट दिखाई दे रहा है जो की ब्लू और वाइट कलर के बैलून से सजा हुआ है।

इसका काउंटर टेबल रेड कलर का है और एंट्रेंस गेट पर ग्लास डोर लगे हुए हैं।

इसमें दो स्विच बोर्ड भी दिख रहा है सामने एक एंट्रेंस गेट दिख रहा है जो कि ब्राउन कलर का है और वो खुला हुआ है।

और चारा एक स्टैंड में रखा हुआ है।

इसमें कंस्ट्रक्शन का काम दिखाई दे रहा है जिसमें आयरन रॉड से कुछ काम हो रहा है एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया रॉ स्ट्रक्चर ।

ये एक दुकान है जिसमें रेड कलर का शटर लगा हुआ है।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

ये एक मोबाइल की दुकान है जहां पर जेरॉक्स लेमिनेशन और पासपोटो भी होता है।

बगल में कुछ कुर्सियां भी रखी है नीचे कुछ दिए भी जल रहे--

बीच के रूम में एक बड़ा टेबल और छे कुर्सियां दिख रही है।

बोर्ड के बगल मे बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पीछे में --

आस पास कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे से बहोत तेज बहता हुआ पानी भी दिखाई दे रहा है।